पीच कलर में बिल्डिंग का गेट का कलर है ब्राउन ।

मेरे सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर में देख पा रहे है कि हम एक सलून जैसा है और इधर --

आदमी ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के जा रहा है और सामने ही दो आदमी बैठा हैं।

और तीन को डॉगी सोया है। दो डॉगी का कलर है ब्लैक और वाइट और एक डॉगी का कलर है गोल्डन और एक आदमी पीछे हाथ देके खरा है| पिंक कलर का टीशर्ट पहने हुए।

और ये थिएटर क ऊपर में बहोत सारा पंखा लगा है और इधर सीट का कलर है रेड और बहोत सारा पंखा है।

बोहोत सारा स्कूल का बच्चा स्कूल का यूनिफ्रॉम पहन के खेल रहा हैं।

मेरे सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि एक पूराना घर है और ऊपर में बहुत सारा घास है।

व्हाइट और ग्रे का स्वेटर पहना है और बाहर दीवाल का कलर है रेड ।

मेरे सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर में हब् देख पा रहे कि तीन आदमी मछली बेच रहा है और इधर एक --

थर्मोकोल डिब्बे में बोहोत सारा मछली है और तीन आदमी बगल पे खड़ा है और एक आदमी बैठ के मछली खरीद रहा है।

बेच रहा है| सब कोई और तीन गो औरत खरा है एगो औरत पिंक और ब्लैक में कपरा पहनी है और एगो औरत --

पीछे चार आदमी खड़ा है और नीचे तीन आदमी बैठा है। व्हाइट कलर का सब कोई कपड़ा पहना है।

मेरे सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर में हम देख पा रहे है कि सरस्वती मां का मूर्ति और बगल में का --

औ बगल में और एक औरत है।

तीन जगह बुक रखा है और पूरा भर्ती है और बुक जहां रखा है उसका कलर है ब्लैक कलर ।